बीच दीवार में बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए है।

दृश्य एक फल के दुकान का है जोकि हरे रंग का है।

और इसके पीछे कुछ बिल्डिंग है जैसे पीला रंग का बिल्डिंग है ब्लू रंग का बिल्डिंग है।

जहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है उसमें लिखा हुआ ओला ।

इसके छत पे काले रंग का टंकी लगा हुआ है।

ये पीछे एक सीढ़ी है जिसके रेलिंग स्टील का है।

और उसमें कुछ प्लांट्स लगी हुई है।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ है और कुछ खेत है।

के जमीन पर उसका शैडो पड़ रहा है।

यहां एक व्यक्ति हाथ फैला कर खड़ा है।

जोकि ब्लू रंग का शर्ट पहना हुआ है और काले रंग का पैंट पहना हुआ है।

यह दृश्य एक कोचिंग का है जो कि लैवेंडर कलर का है।

और नीचे फर्श पर मैट बिछा हुआ है।

गल पे एक पोस्टर लगा हुआ है जोकि काले रंग का--

यह दृश्य एक हॉस्पिटल के छत का है।

जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है जो कि क्रीम और ब्राउन रंग का है।

इसपे लिखा हुआ है ए वन एन जे बी पार्लर यहां कुछ कुछ पिक्चर बनी हुई है।